ये हमारे गोरखपुर के जैसा मतलब रेलवे स्टेशन पे भीड़-भाड़ जैसे होता है वैसे नहीं आता यहां पे काफी --

यहाँ का पेट्रोल टंकी बहोत अच्छा है यहाँ पे तेल शुद्ध मिलता है एकदम।

बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अच्छा और देखिए सामने ये हॉल है ।